और घरों में रोशनी जगती हुई दिखाई दे रही है।

एक फ्लावर का वीडियो दिख रहा है।

और व्हाइट व्हाइट कलर की एक दीवार दिखाई दे रही हैं।

इस पिक में एक क्रिकेट का पिच दिखाई दे रहा--

और साथ में दीवार पे रैक बने हुए हैं।

उसमें कुछ जींस और लॉयर और बेल्ट कुछ चप्पलें टंगी हुई दिखाई दे रही हैं।

और गेलीस ने ब्राइडल ड्रेस पहने हुए हैं।

और कुछ व्यक्ति चलते हुए दिखाई दे रहे हैं साथ में वूमेन --

कुछ चेयरों पर बैठे हैं कुछ खड़े व्यक्ति है।

एक लड़का सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहा है।

और साथ में एक सोलर सिस्टम की बहोत बड़ी प्लेट लगी हुई है और कुछ व्यक्ति जहां खड़े हुए दिखाई दे रहे--

और तीनों के अ दोनों के शेरबानी डाली हुई है और एक के बास्केट डाली हुई है।

और भी यहां एक्ससाइज करने के लिए मशीने लगी हुई है।